एखर मोबाइल नंबर भी हे एहा लॉन्ड्री ये जो कि ड्राई क्लीन भी होथे एकर कर हमुमन देथे बहुत मन रायगढ़ के देथे बहुत अच्छा जगह है।